दो लोग सामने से आ रहे --

चर्च के दोनों साइड बड़ी-बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं।

बहार एक लड़का खड़ा हुआ है।

कुछ कपड़े करके अलमारी मे रखे हुए है।

उनके पास में एक बड़ा-सा बोर्ड लगा हुआ है।

इसमें टेबिल कुर्सी रखी हुई हैं।

इसको बहुत अच्छे से लाइटो से सजाया गया है।

सामने एक हरे रंग का घर है।

उससे एक तिरपाल बंधी हुई हैं।

उसके ऊपर एक खिड़की है।

नीचे तीन पिंडियाँ बनी हुई हैं।

नीचे फर्श बीछा हुआ है |

यह एक मंदिर है यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं लेडीसो के सिर पे मुकुट लगा हुआ हे सामने लाइट लगी हुई है कुछ --

ये भैंस बंधी हुई है उसके पास में एक छोटी भैंस बंधी हुई है उसके सामने चारा पड़ा हुआ है ऊपर टीन सेट है।

सामने हरे-भरे पेड़ है कुछ खेत दिखाई दे रहे है ये गार्डन बडा है और सामने से एक सड़क जा रही है उसके पास में एक --

ये सामने एक स्टेज है इसमे एक सोफ़ा रखा हुआ है उस --